यहां पर एक वाहन खड़ा है।

यहां पर पीछे बहुत सारे पे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर पीछे ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है।

यहां पर एक टीचर दिख रही है।

यह एक बैंक का दृश्य है।

यहा पर कुछ चेयर भी लगे हुए है।

यहां पर कुछ बल्ब भी जल रहे हैं।

यह एक झोंका का दृश्य लग रहा है।

यहां पर तीन पुतले लगे हुए --

यहां पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर कुछ आदमी खरे हुए हैं।

वहां पर बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यह एक पुल का दृश्य लग रहा है।

यहां पर बहोत सारे वाहन खड़े हैं।

यहां पर एक नदी भी है।

यहां पर बहोत सारे वाहन लगे हुए हैं।

यहां पर लाल कलर के बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं।

यहां पर एक वाइट कलर का बोर्ड दिख रहा है।

यहां पर एक वाइट कलर का --

यहां पर कुछ घर भी हैं।

यहां पर बहोत सारे बेंच लगे हुए है।

यहां पर वाइट कलर का एक पंख लगा हुआ है।

एक रेलवे क्रॉसिंग बैरियर दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो वाइट कलर की वाहन हैं।

यहां पर बहोत सारे लोग भी दिख रहे हैं।

यहां पर एक आदमी खड़ा है।

यह किसी गैरेज में रखी हुई है।

यह एक स्टेडियम का दृश्य लग रहा है।

यहां पर व्हाइट कलर का लाइट जल रहा है।

यहां पर हरा कलर का टेबल रखा हुआ है।

बैंक के प्रवेश द्वार पर एक रैप है।

यहां पर एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक मानव का कंकाल है।

यहां पर वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक बुक की दुकान है।

यहां पर व्हाइट कलर का कुछ बल्ब जल रहा है।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

यहाँ पर कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पर कुछ हरे घास लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे मजदूर दिख रहे हैं।

यहां पर भवन निर्माण किया जाएगा।

यहां पर मजदूर अपना काम कर रहे हैं।

यहां पर व्हाइट कलर का एक फैन लगा हुआ है।

यहां पर ब्लैक कलर का एक टेबल रखा हुआ है।

यहां पर एक चप्पल रखा हुआ है।

यहां पर सामने में बहोत सारे गाछ हैं।

यहां पर व्हाइट कलर का मंदिर है।

यहां भ पेर बहोत सारे हैं।

यहां पर एक आदमी कुछ हाथ में रखा हुआ है।

यहां पर व्हाइट कलर का छत है।

यहां पर दो चप्पल दिख रहे हैं।

यहां पर कुछ लोग भी हैं।

यह एक बहोत बड़ा इमारत है।

यह एक डांस का दृश्य है।

यहां पर एक नाव भी लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारी बुक रखी हुई हैं।

यह एक खाना का दृश्य है।

यहां पर एक फोन भी रखा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे झूले लगे हुए हैं।

यहां पर कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

यहां पर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां पर वाइट कलर के कुछ बल्ब जल रहे हैं।